और एक बीच में औरत खड़ी है जिसने सफेद रंग की फ्रोक और सफेद रंग का सर पे दुपट्टा लगाया हुवा है।

और ये दो मंजिले का मकान है।

जहाँ बहोत से रंग बिरंगे झूले आये हुए हैं और बहोत से बच्चे औरतें इस मैदान में खड़े हैं।

कुछ कुछ कपड़ो के ऊपर भी चीट चिपकाये गए हुए है। उनपे उसका दाम लिखा हुआ है।

और बहुत -सी भीड़ एकट्ठा हुई हैं।

एक ही कगार में बहुत सारी दुकाने बनी हुई हैं।

और कुछ चाटाइयो और पोलीथिन से ये झोपडी बनायीं गयी हुई है।